जिसका मतलब इस मकान में कपड़े धोने का काम होता है।

ये मूर्ति किसी पत्थर से तराशी हुई मालूम पड़ती मूर्ति को बहुते खुबसुरत तरीके से तरास कर बनाया गया मालूम पड़ता हैं।

तस्वीर में हमें दो पहियों वाले गाड़ी के एक बहुत बड़े दुकान के अन्दर के मंजर को दिखाया गया है।

तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़ा और खुले मैदान के मंजर को दिखाया गया है जहां मैदान में छोटे-छोटे पौधे देखे जा सकते है।

तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़े मकान की तामीर में काम को दिखाया गया है।